और बहोत सारी चीजे रखी हुई है और इधर की तरफ बहोत सारे जैम रखे हुए हैं और यहां बदाम रखे हैं काजू रखें हैं यहां चौकोज रखा हुआ है।

और यहां पर जो है पुरी बेलने के लिए बेलन रखा है एक बहुत बड़ा पटला रखा है सइबान रखा है और यहां पर कुछ आटा रखा है।

और इधर की तरफ बहोत सारे लोग बैठे हैं जो और भी काम कर रहे हैं और एक बच्चा कोई सामान दे--

साइकिल मार्च ऐसी ऐसे लिखा हुआ है और यहां पर जो है अंदर की तरफ एक दुकान है।

साड़ियां हैं सूट है पन्नी में पैक है और यहां पे जैकेट है स्वेटर हैं।

और पीछे की तरफ बहुत सारे वहां पे अह घास वांस है।

फुल पुल के नीचे का सिन है और ये ऊपर की तरफ पुल है नीचे जो ये है रास्ता जाने का--

और भी बहोत सारी चीजे और जो पी_जी मॉल है वो भी यहां पर अं लाइटों से जगमगा रहा--

पर डॉक्टर केबिन है और यहाँ पर डॉक्टर की चेयर रखी है और मेज़ यहाँ पर मेज़ रखी है बड़ी सी और बैठने के लिए एक मरीज के स्टूल रखा हुआ है और यहाँ पे बेड सा पड़ा है चेक करने के लिए।